सप्लाई किए जाते हैं और इसको बहुत --

जो दिखने में काफी सुन्दर और मस्त है।

और यहाँ बहुत पेड़ वगैरा भी लगे हुए --

और यहाँ बोहोत दूर-दूर से पार्क लोग घूमने फिर --

और यह बैंक में बहुत ही अच्छा सुविधादायक --